एक बाइक दिखाई दे रही है।

ऊपर काफी सारी लाइटें दिखाई दे रही है।

इसके सामने बहोत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है।

यह एक ग्रास दिखाई दे रहा है।

यहां पर काफी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।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

और में काफी सारा घास दिखाई दे रहा है।

यहां पर काफी सारे बच्चे बैठे हुए है।

पीछे काफी सारी बेंच दिखाई दे रही है और काफी सारी बर्तन दिखाई दे रहे हैं।

आसपास काफी सारी हरी भरी घास दिखाई दे रही है।

काफी सारी दुकाने दिखाई दे रही है।

इसके अंदर इंग्लिश सीट दिखाई दे रही है वाश बेसिन दिखाई दे रहा है।

यह एक सुनार की शॉप दिखाई दे रही है।

ग्रील लगी हुई दिखाई दे रही हैं और गमले दिखाई दे रहे है।

यहां पर स्टॉल स्टॉल पर काफी सारा खाना रखा हुआ है।

जो जिसमें बहोत सुंदर सजावट कर रखी हुई है।

और इसमें काफी सारी घंटी टंगी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक पार्क दिखाई दे रहा है।

पीछे बहोत अच्छी सजावट कर रखी है।

दीवार पर पेंटिंग दिखाई दे रही है।

यह एक पाठशाला दिखाई दे रही है।

और एक बेंच पे काफी सारा सामान रखा हुआ है पास में एक फोन रखा हुआ है।

इसके पीछे में मिट्टी के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे एक चेयर दिखाई दे रही हैं।

यह एक कोचिंग क्लास दिखाई दे रही--

जहां पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।